दूसरी ओर देख़ने पर यहाँ पर छोटी-छोटी सी इमारतें बनी हुई है जो कि --

कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। काउंटर के सहारे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में फेक्चर हुआ है।

दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं। शीशे लगे हुए हैं। मशीने रखी हुई है।

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रही है रोड के दूसरी ओर देखने पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ छोटे-छोटे --